इसमें से बहुत दो लोग मच्छी काट रहे हैं उसे छिल रहे हैं बहुत सारे छिलके पड़े हुए हैं।

फोटो एक डांस रूम की हैजहां पर बहुत सारे लोग डांस सीख रहे हैं जहां पर एक--

यह तस्वीर एक लाइब्रेरी की नजर आ रही है जिसमें--

लाइब्रेरी में बहुत सारी वूखे -ए रखी हुई है। और यहां पर कोई भी लाइब्रेरी में कोई भी जाकर आराम से पढ़ सकता है यह लाल लाइब्रेरी है।

आसमान नीला हुआ दिखाई दे रहा है दूर-दूर तक के पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं बड़े-बड़े--

यह एक तस्वीर है जहां पर नदी में लोग-बाग अ तैरते हुए नजर आ रहे हैंऔर यहां पर बहुत सुंदर नदी दिखाई दे रही हैजहां पर आसमान सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा है।

यह तस्वीर एक सुंदर होस होटल की नजर आ रही है जहां पर कोई डेकोरेशन चल रहा है।